एक आदमी खड़ा है आगे बिल्डिंग के आगे उसके पीछे चित्र लगा रखा है बहोत ही शानदार चित्र लगा रहा है --

फूल भीं ऊपर फूल भीं लगा रखीं है मालाएँ भीं लगा रखीं हैं और उसके बाहर भीं कु --

एक बहोत बड़ा मोटा मंदिर है मंदिर के आगे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं दर्शन कर रहे हैं।

एक घरों की एक गाढ़ा छोड़ रखा है और एक--

और इसके बीच में एक गोबर इकट्ठा कर रखा है और बाड़े में एक गोबर और सूखा इकट्ठा कर रखा है।

बहुत सारे और इसके आगे एक बिल्डिंग के आगे बहुत बड़ी टैक्सी खड़ी है और उसके पास में एक स्कूटी भी खड़ी हुई है स्कूटी के --

जो हरियाली से भरे हुए हैं उसको सजा रखे हैं और उसके अंदर भी बहोत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर एक बहोत बड़ा--

और सामान भी रखे हुए हैं उसके अंदर एक बहोत बड़ी टेबल लगी रखी है उसके एक फर्नीचर की टेबल भी रखी है।

सामने जस्ट बहोत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं बहोत बड़ा पे पेड़ भी है और सामने उसके पास में एक --

बहुत बड़े बड़े सामान पड़ा है इसमें कपड़े धोनों की वाशिंग मशीन भी है और उसके अंदर एक टेबल पे आदमी बैठा हुआ है उसके टेबल के ऊपर क --

यहां पर एक बहोत बड़ा हॉल है हॉल के ऊपर टेंट और बीच से कुछ कटा हुआ है और उसका --

ऐसे ही बैठे हुए है कुछ लोग कुछ बाते कर रहे है कुछ लोगों को समझा रहे है सामने एक वोल्ड के सामने।

यहां पर एक बहुत बड़ी होटल है होटल के--

कुछ लाइटें बहोत चमकदार है ऊपर पेंटिंग भी हो होटल की बहोत शानदार कर रखी है टाइलें भी शानदार लगा रखी है।